यह एक रेस्टोरेंट होटल है जिसमें अंदर बहुत सारी मेज रखी हुई है और बहुत ही सारी कुर्सी रखी हुई है।

यह एक सहारनपुर रेलवे स्टेशन है जिसमें बहुत सारी आदमी हैं और बहुत सारी ऑटो रिक्शा भी है।

और एक कैमरा भी लगा हुआ है और बहुत सारे आदमी भी हैं।

और इलेक्निकल्स का सामान भी है और बराबर में एक कपड़े की शॉप है।

और एक गोंद है और एक चार्ट पेपर है इसपे बहोत ही अच्छे पेंटिंग बनाई हुई है।

और उसमें बहोत सारे आदमी भी हैं वह मछलियाँ पकड़ रहे हैं।

और एक आदमी भी हैं और एक पलक भी लगा हुआ है।

और चार कुर्सी भी रखी हुई है और एक मेज है और एक हाथ धोने की है।

यहां पर बहुत सारी दुकाने हैं।

और बहुत सारी पेड़ भी हैं।

और एक खिड़की भी है और इसमें सामान रखने के लिए दो टेबल भी रखा हुआ है।

और एक बाइक है और एक साइकिल भी है।

यह एक हॉल है जिसके अंदर दो आदमी हैं और बहुत सारे पर्दे भी लगा रखे हैं।

और दो सोफे भी रखे हुए हैं।

और बहुत सारी कुर्सी भी रखी हुई है।